लेफ्ट साइड में बहुत साले बड़े बड़े मार्बल्स खड़े हैं सामने एक सीढ़ी है और एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ब्लू कलर का में ए_टी_एम लिखा हुआ है और येलो कलर में भी बोर्ड है।

एक ब्रिज उसके ऊपर से क्रॉस किया हुआ है जो कि बहोत लंबा ब्रिज है और ब्रिज का कलर सिल्वर है और नीचे से एक मोटा सा ब्लैक कलर का पाइप भी जा रहा है।

यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग का पोल भी लगा हुआ है और नीचे साइड ऑरेंज वाइट और ग्रीन कलर का रंगोली भी बनाई हुई है।

अजंता डायरी के पास बहोत सारी भीड़ है बहुत सारे लोग खड़े हैं जोकि यहां पे कुछ खाने पीने आए हुए हैं।

लेफ्ट साइड मे जो यहां पे पावदान है वो भी रखा हुआ है।